इस पे लोग सरक कर नीचे सीधे पूल में गिरते हैं और लोग नहाते हैं।

यह एक मछली मंडी की तस्वीर है जहा पर बहुत सारी मछलिया देखने को मिलेेंगी छोटी-बड़ी काली-गोरी सारे टाइप की मछलिया यहा पर हैं ।

और ग्रीन कलर में कॉम्बिनेशन दिया गया है।

जैसे कि इस स्टैचू में एक स्कर्ट और टॉप लगी हुई है और दूसरे जो कि ग्रीन कलर का है।

जैसे की यहाँ पर तीनों रिक्शे खड़े हैं और एक महिला चलते हुए आ रही---